इसके पीछे सूर्य उदय हो रहा है।

चलता हुआ दर्शाया गया है।

कपड़े दर्शाए जा रहे हैं।

दर्शाया जा रहा है जहाँ पर बहोत सारे --

दर्शाइ जा रही है।

दो पहिया वाहन भी दर्शाए गए हैं और एक आदमी --

भी दर्शाया गया है। जो की--

तीन पहिए वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

काफी सारी इमारतें भी दिख रहें हैं और --

वो एक औरत है।